यहां में एक कच्चा घर दिखाई दे रहा है।

उसका अंदर बहुत सारा टायर है।

बिल्डिंग का ऊपर में सोलर पैनल दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान दिखाई दे रहा है।

है उसका अंदर बॉक्स बॉक्स बना के बहुत सामान रखा हुआ है।